देख सको कोई बुद्ध की तस्वीर है ये देख सको ओ बेड है बेड के ऊपर फूल वगैरा पड़े हुए है।